एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा क्रिसमस ट्री लगा हुआ है जो की बहुत प्यारा लग रहा है ईसके आसपास छोटे-छोटे पेड़ लगाए गए हैं लैंप्स लगे हुए इन लैंप्स का कलर कुछ व्हाईट और ग्रीन है।

ए सामने की तरफ एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसके उपर अ गौर बंग लिखा हुआ है आ कांच की खिड़कियां है।

तरफ कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई है कई सारी साइकिलस खड़ी हुई है एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर-अ पाबना ईसस्पोर्टिंग लिखा हुआ है इससोर्टस ग्राउंड है यह--

एक बड़ा सा दरवाजा है जिसके ऊपर है नीले रंग का कलर है। लोहे का इसके अंदर एक छोटा सा दरवाजा बनाया गया है। जो कि खुला--

बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं पक्की सड़क बनी हुई है यहां पर कई सारी बाइक्स खड़ी हुई है कुछ पाइपस लगे हुए है . जिनसे आ इस रास्ते को बंद किया गया है बड़ी बड़ी गाड़ी--

सामने की तरफ एक पेट्रोल पंप है जिसके ऊपर इंडियन ऑयल लिखा हुआ है एक मैरून कलर की वैन --

यह नीली एह गहरी नीली नीली और सफेद कलर का पेंट किया गया है बिल्डिंग के ऊपर। यह बेसमेंट का फोटो --

सारी लोहे की बड़ी-बड़ी जालियां नजर आ रही है इनके ऊपर कुछ गुलाबी रंग का पेंट किया गया है।